लैब का काम कर सके यहां पे है बालकनी और यहां पे है दरवाजा जो कांच का बनाया हुआ है बिल्डिंग का कलर है जो वाइट कलर मारे हुआ है।

यहां दो बाल्कनी है बाल्कनी में झाड़ है जो शो के लिए लगाए जाते है यहां पे--

यहां पे दुकान में जैसे का जो यहां पे नीले कलर के--

चोको शेप में है और इसी तरह एक पीछे सोफा सेट है।

में जैसा जो मसल के दिखाई दे रही है।

और यहां पे झंडा है जो पीला और उसके पीछे लाल और उसके पीछे हरा है।

देख तो वहां पे बिल्डिग्स नजर आ रहे हैं।

पीछे वर्कर काम कर रहे हैं जो रोड का काम चल रहा है और उसके पीछे ट्रक जा रहे हैं आसमान है आसमान खुला है।

यहां मंदिर है जो हाइट वाली है और यहां पे मंदिर के व्हाइट कलर है वहां पे एक देवी की फोटो है और वहां पे एक छोटी सी खिड़की है।

और नीचे एक गाय बैठी हुई है एक सफेद गाय ठहरी है उसके बाजू में भी एक गाय --

लाइट चालू है और यहां पे बोर्ड लिखा हुआ है।

जानवरों की फोटू और परिंदों की भी फोटू है जो वहां पे साइड में लगाया हुआ है।

यहां पे एक स्कूल है जो स्कूल के नीचे दो पुलिस वाले आये हुए हैं और टीचर बाहर आये हुए हैं और यहां पे ऊपर नीचे दो स्कूल हैं।

पे दो गायिका है जो गाना गा रहे हैं एक सिंगर एक सिंग--

भरे है और खेत है यहां पे जो छोटे-छोटे झाड़ हैं और आसमान है जो--

झाड़ हरे भरे हैं और यहां पे सीढ़ियां है जो सीढ़ियां से आदमी आया है आगे फोर टू व्हीलर खड़ी हुई है और शो के झाड़ भी है उसके सामने।

और यहां पे आधे लोग कपड़े नहीं पहने हुए हैं पानी दूर तक है आसमान साफ है।

होटल हैं बिरयानी की जहाँ चिकन बिरयानी हैं।

यहां पे कुत्ते हैं जो गले में अटकाए हुए हैं।

गले मे फसाते है एक आदमी है जो उनके गले मे से निकाल रहा है पिंजरे मे बंधे हुए हैं।